और जो पहाड़ हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और हरे हरे पेड़ जो हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं पानी बहोत अच्छा लग रहा है। ये जो ब्रिज है बहुत प्यारा है।

जो भून के रखी हुई हैं बहुत अच्छी लग रही हैं। ये बड़े-बड़ी मछलिये हैं। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।

किताबें यहां रखी हुई है। ये बहुत ही अच्छी-अच्छी किताबें लग रही हैं जिनका कलर ऑरेंज वाईट हरा लाल काला पीला जो भी सब अच्छा लग रहा है।

ये जो सी.सी.टी.वी. कैमरा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा हैं। ये खिड़की का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा हैं ।

आदमी बाल कटा रहा है लग रहा है ये सेलून में आया हुआ हैं। यहां पर सेलून में बहुत अच्छे बाल कटते हैं।

पीछे एक आदमी जिम लगा रहा है बहुत अच्छा लग रहा हैं। नीचे लाल कलर और बैंगनी कलर का मैट बिछा हुआ है।

ये एक रोड लग रहा है मुझे जहां पर बहुत ज्यादा ट्राफिक है और एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है।

ये बनियान के दुकाने ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये वाइट कलर के शूज पहने हुए है| ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं।

सफेद सफेद ये जो फर्श बिछा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो ऊपर जाने बहुत अच्छा लग रहा है नीचे जो आदमी खड़े हैं बहुत अच्छे लग --

यहाँ पर पेन रखी हुए हैं। ये बहोत सारे हैं और ये मुझे बहोत ही अच्छे लग रहे हैं।